यह एक दुकान है। यहाँ देखिये स्प्राइट या लोगो भी लगाया गया है।

यहाँ देख सकते हैं की यह गार्डन जैसा लग रहा है। जैसा की पौधे वगैरा यहाँ लग रहा है छोटे-छोटे।

यह सुधाकर बम्पर है। दिखिए यहाँ पर कई प्रकार के सामान वगैरा रखे गए हैं। इलेक्ट्रिक सामान जो काफी अच्छा है।